हरे बगीचे पर हरा रंग का घास उग कर दिखाई दे रहा है पानी पर।

तस्वीर में मुझे एक बड़ा कमरा का अंदर हिस्सा दिखाई दे रहा है।

इसके ऊपर दो तरफ एक जुआ सा स्ट्रक्चर दिये है।

बिल्डिंग के बाहर वायर भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग पर एक लाइन से नीला रंग का भी किया गया है।

ऊपर सीलिंग बक्सा बक्सा बना हुआ है जिसका रंग पीला है।

व्यक्ति के उस पार रस्ते के कॉर्नर बड़ा सा नदी भी दिखाई दे रहा है।

सामने एक औरत खड़ी है।

इंसान ने नीला रंग का टी शर्ट पहना है और ब्लैक रंग का पैंट पहना है।

सामने एक सफेद रंग का गाड़ी है जिसके पीछे काला रंग का बड़ा सा दीवार लगा हुआ है जिस पर किया लिखा हुआ है।

पीछे भी एक सफेद रंग का गाड़ी है।

दरवाजा खुला हुआ है ऊपर वेंटीलेटर भी है।

बीच मन्दिर के पीछे एक बड़ा हरा रंग का घास भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर के बाहिनें तरफ एक सफेद रंग का स्कूटी भी है और उसके उस तरफ पर इंसाने भी दिखाई दे रहे हैं।

दाहिने तरफ बिल्डिंग के बाहर बरंदा पर दो गाड़ियां भी दिखाई दे रहा है।